यहाँ एक बहुत ही बड़ी मंदिर है यहाँ की बहुत ही ज्यादा लोग कहा जाये तो माने तो कम से कम हजार से भी ज्यादा लोग यहाँ पे कुछ बैठे है कुछ खड़े है मंदिर के अंदर में भी बहुत है।

मंदिर के चारो साइड गाछी वृक्ष तो बहुत ही सुन्दर लग रही है देखने में इतना सुन्दर की कहा नहीं जा सकता है मंदिर के बारे ----

की ये जरूर कोरोना का टीका दे रहे है और पीछे में कुछ पोस्टर सब टाँगे हुए है डॉक्टर सब बहुत ही अच्छे से बैठे है।

यह एक बुक की दुकान है माने तो यह लग रहा है की ये बुक की दुकान आज ही उद्घाटन हुआ है जहाँ की सभी पूजे पाठ कर रहे है अच्छे से और दुकानदार अब प्रणाम करके ध्यान में बैठे हुए है।

की यहाँ लड़ पीछे मे लड़के भी है जो की योगा कर रहे है ये बहुत ही अच्छी जगह है पूरा लाइट वाइट लगा हुआ है यहाँ पे ---

यह एक साड़ी की दुकान नहीं दुकान नहीं बोला जाये इसको इनको तो फैक्ट्री बोला जाये ये एक साड़ी की फैक्ट्री है जहां पे रंग-बिरंगी साड़ीयां बनी हुई है।

यह एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है बिल्डिंग नहीं माने तो पुराने जमाने के लग रहा है अंग्रेज के जमाने की घर बनी है जिसमे की --

यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रखी हुई कुछ तो पैक करके रखी हुई है यहाँ पे रंग-बिरंगे रखी हुई है जो की आकर्षित करने वाली है हमें तो बहुत ही सुन्दर लग रही है देखने में---

यह एक इंजीनियरिंग कॉलेज की माने तो प्रैक्टिकल रूम है जहां की रंग-बिरंगे हथोड़ा ये सब उम--

यह एक मॉल की तस्वीर है जो की बहुत ही सुंदर मॉल है आज यहाँ पे श्री राज किशोर बुकलेट लिखा हुआ है उसके आगे मॉल के आगे में बहुत सारे गाड़िया लगी हुई है ।

यह एक बहुत ही अच्छी मंदिर है मंदिर पे एक सीढ़ी है चढने वाले कुछ दुरी हटके उसके बाद ऊपर मंदिर है।

कलर बहुत ही अच्छे से की हुई है मंदिर के आगे दो छोटी-छोटी सी मंदिर बनी हुई है मंदिर के पीछे में छोटी एक घर भी एक घर भी है उसके साइड में गाछी ब्रिज़ है। बहुत ही आकर्षित--

यहाँ पार्किंग हैमाने तो पार्किंग में साइड में से पूरा फॉर व्हीलर लगे हुए है एक फॉर व्हीलर उधर से आ रहे है। रोड पे पीछे एक बड़ी-सी मकान है। ये लग रहा--